और गाड़ी के भीतर एक ऑरेंज कलर का कुछ रखा हुआ है गाड़ी के दो ऐनक है दो हेड लाइट है।

चार तल्ला घर है उसमे ए.सी. लगा हुआ है वहां कपड़ा पसारा हुआ है पेंट है वहां पे आदमी दिखा रहा है मुझे चार तल्ला है।

अगर बॉउजी यहाँ पे बहुत सरी साडी थकिया हुए हैं और बहुत लम्बा साडी हैं लग भग पाँच हा--

मॉर्डन है मॉर्डन को कपड़ा पहनाया गया है इधर इधर टी.वी. है टी.वी. बहुत --

सीट निकली हुई है आगे एक आगे भी एक चक्का है वहाँ पे बाल्टी है वहाँ पे घर में एक लाल कुछ दिख रहा है वहाँ पे न्यूज़ पे --